गंदे फुल बहुत सारे पौधा रखा हुआ है इसके बगल में दुकान के मालिक बैठे हुए है एक छोटा सा बच्ची और एक लेडिस पुजारी है।

अन्य प्रकार के कार्यक्रम करने का सलाह दे रहे हैं और शिक्षक गण पीछे खड़ा है और स्टेज बहुत ही सुनहरा दिख रहा है और मैडम भी पीछे खड़ा है।

बहुत सारे यहां पिकनिक करने के लिए आते हैं और यह बड़ा मस्त दिख रहा है और यह बड़ा ही विशाल झरना है झरने के बगल यहां पर जंगल है और यहां बहुत सारे मछलियां--